येलो कलर का पेंट हो रहा है इस पूरे जिम मे पुरे दिन में और निचे ब्लैक कलर की टाइल्स या कारपेट कुछ बिछ रही हैं यहां पर लाइटिंग लाइटिंग लगी हुई है |

मुझे यहाँ पे काले दिखाई साइकिल रेड कलर कुछ लेडिस भी दिखाई और एक जो खम्बा लगा हुआ है उसपे कुछ लिखा है वाला बोर्ड कुछ ऐसा लिखा है जो की मुझे बोर्ड भी दिख रहा है आस-पास दिख रहा है वो --

यहाँ पर एक वाइट कलर कि मुझे बिल्डिंग्स भी दिख रही है दो बाइक दिख रही है दो कार दिख रही है एक कोई खड़े है जो कार कि तरफ देख रहे हैं।

मुझे ग्रीन कलर का घर दिख रहा है यहाँ पर मुझे चद्दर भी दिख रही है और ग्रीन कलर से पेंट हो रहा है ये घर यहाँ जीने लगे हैं रेलिंग लगी है।

यहाँ पर मुझे छोटा -सा मेडिकल स्टोर दिख रहा है वहाँ पैर ब्राउन कलर का एक टेबल रखा हुआ है एकठो स्टूल रखा है ब्लैक कलर की चेयर रखी।